इस छवि में एक बहुत ऊंचा घर को देख पा रही हूं जो बिल्डिंग में है।

और दीवार में ओल्ड टाउन अंग्रेजी शब्द में लिखा हुआ मुझे नजर आ रहा है।

दिए गए छवि में मैं एक दुकान देख पा रही हूं।

मुझे दुकान के अंदर अलग अलग चीजे नजर आ रहा है।

वहां भी बहोत सारा सामान मुझे नजर आ रहा है।

दिए गए छवि में मैं एक लड़के को देख पा र--

दुकान में बहुत सारे अलग अलग चीजें रखे हुए--

छवि के अन छवि के जो कमरे हैं उसके ऊपर लाइट्स भी ऑन है।

कुछ लोग मच्छी भी बेच रहे हैं।

तीनों ही अपने अपने योगा कारपेट के ऊपर आसान करते हुए नजर आ रहा है।

मुझे आसपास नदी नजर आ रहा है।

और ग्रीन प्लांट्स भी मैं देख पा रही हूं।

दिए गए छवि में मै कुछ लोगों को देख पा रही हूं।

मुझे इस छवि में बहुत सारे बाइसाइकिल्स खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

छवि में एक बोर्ड भी दिखाई दे रहा है।

दिए गए छवि में मैं एक दुकान देख पा रही हूं।